आपका फिर से स्वागत है! हमारे पिछले ट्यूटोरियल में हमने स्थापित कर लिया था जो हम बदलने जा रहे हैं और कैसे हम इसे बदलने जा रहे हैं
हम वह कर चुके थे
अतः अब मैं अपना कोड जाँचूँगा
यदि हम अपने डेटाबेस में देखें हमारे पास यहाँ कुछ रिकार्डस हैं
मैं david का रिकार्ड यहाँ से डिलीट करने जा रहा हूँ क्योंकि यह एक अन्य ट्यूटोरियल से था
डिलीट करने के बाद हमारे पास alex kyle emily और dale के रिकार्डस हैं
यहाँ मैं उदाहरण के लिए kyle का रिकार्ड इस्तेमाल करूँगा और इसको एक विशिष्ट वेल्यू में बदलूँगा
हम अपने पेज को रिफ्रेशrefresh करेंगे और सुनिश्चित कर लें कि यह अपडेट किया हुआ है
मैं kyle चुनूँगा और इसको karen में बदल दूँगा और मैं change पर क्लिक करूँगा और यहाँ सब कुछ गायब हो गया है
अब हम अपने टेबल में वापस आएँगे और इसे रिफ्रेशrefresh करने के लिए browse पर क्लिक करेंगे
हम स्क्रोल करके नीचे आएँगे और पाएँगे कि कुछ नहीं बदला
मुझे लगता है मैंने एक गलती कर दी है मेरी गलती यह थी कि यह पहले name था और अब मैं इसे value में बदल दूँगा
इसे name के बजाय value रखने की जरूरत है
value उसकी वेल्यू रखता है जो कुछ भी यहाँ चुना जाता है; अतः वेल्यू id है
जब हम अपना फॉर्म जमा करते हैं वह यहाँ आएगा और वेल्यू यहाँ id के अंदर समाहित की जाएगी
अतःमैंने समस्या ढूँढ ली और उसे ठीक कर दिया और अब मैं वापस जाऊँगा और रिफ्रेशrefresh करूँगा
यहाँ मैं एक बार पुनः kyle को karen में बदलूँगा change पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ
जब मैं अपने डेटाबेस को एंटर करता हूँ आप देख सकते हैं कि हमें alex kyle emily और dale मिला
चूँकि हमने kyle को karen में बदल दिया है हमारी id को बदलाव दिखाने चाहिए
किन्तु जब हम browse पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रोल करते हैं हम देख सकते हैं कि kyle अब karen से बदल गया है
अतः आप फॉर्मस का इस्तेमाल करके वेल्यूस भी अपडेट कर सकते हैं
यह बहुत सरल है जब तक आपको इनका ज्ञान है
आप यह सब सीखने के समर्थ होंगे जब तक आप इन ट्यूटोरियल्स के बुनियादी भाग को सीख लेते हैं
अभी तकइस ट्यूटोरियल मेंआपने प्रविष्ट करना और अपडेट करना और इसी तरह से कुछ और सीखा
आखिरी चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि डिलीट कैसे करें
आपको दिखाने के लिए कि डिलीट कैसे करेंमैं इस पेज को बंद कर दूँगा और इस बॉक्स को हटाऊँगा और इसको एडिटedit करूँगा
मैं change को delete से बदलूँगा
यहाँ मैं रिकार्डस को डिलीट करूँगा जहाँ हमें एक विशिष्ट नाम दिखाया गया है
यह करने के लिए मैं यहाँ lastname जोड़ दूँगा
चलिए अब यह रिसेंड नहीं करते और चलिए वापस mysqlphp पर चलते हैं
यहाँ हमारे पास अब alex garrett karen headen है जोकि मेरे पिछले उदाहरण से बदले या सुधारे गये हैं
हम karen headen पर क्लिक करेंगे और हम delete पर क्लिक करेंगे यह रिकार्ड को डिलीट कर देगा
किन्तु अभी इस समय यह डिलीट नहीं हुआ है
चलिए पहले हम यह सुनिश्चित कर लें कि हमारे सारे रिकार्डस पूरे हैं
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैंहमारे पास सारे रिकार्डस पूरे हैं और मैं डिलीट करने के लिए एक विशिष्ट रिकार्ड चुनूँगा
चलिए डिलीट emily headen लिखते हैं अतः मैं डिलीट करने के लिए emily headen का रिकार्ड चुनूँगा
अब हमें इसे mysql underscore deletephp नामक एक नये पेज में जमा करने की आवश्यकता है
इसके लिएहम एक नया पेज बनाने जा रहे हैं जिसको mysql underscore deletephp के रूप में सेव करते हैं
हम बिलकुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पहले किया था
हम जुड़ने के लिए require पर जा रहे हैं अतः हमें डेटाबेस से जुड़ने की आवश्यकता है
ओह माफ़ कीजिये! चलिए हम वापस require connectphp पर जाते हैं और हम फिर से वेरिएबल्स को लेंगे
अतः चलिए यहाँ todelete टाइप करते हैं और जोकि फिर से यहाँ post वेरिएबल के बराबर है
हम इस फॉर्म को इस पेज पर पोस्ट कर रहे हैं और चलिए यहाँ कुछ वेल्यूस बदलते हैं
चलिए todelete लिखते हैं
अतः हमने अपने select name को todelete में बदल दिया
अबयदि आप यहाँ इस फॉर्म में एक नज़र पीछे डालेंमैं आपको कोड फिर से दिखाऊँगा
यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक स्थिति में हर रिकार्ड के लिए हमारे पास हमारी नेम वेल्यूस और हमारी id वेल्यू हैं
यदि हम रिफ्रेश करते हैं हमारे फॉर्म का नाम todelete है और हम इसको प्रत्येक वेल्यू हेतु ले रहे हैं
यदि emily का रिकार्ड चुना गया है हम रिकार्ड डिलीट कर देंगे जहाँ id 3 के बराबर है
चलिए हम अपने कोड पर वापस जाते हैं और यहाँ हमारे पास हमारी post वेरिएबल है
अब मैं एकोecho करके आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूँ कि यह कैसे संसाधित होता है
यहाँ हमारे पास emily headen है हमारे पास यहाँ 3 है जिसका मतलब है कि हम यह id 3 को डेटाबेस बल्कि टेबल में से मिटाने के लिए उपयोग कर सकते हैं
यहाँहम पुनः एक नया वेरिएबल बनाएँगे और मैं इसे mysql underscore query बोलूँगा
इसके अंदर हम पूरे नये कमांड्स का एक समूह इस्तेमाल करेंगे
हम टाइप करेंगे delete from और स्पष्ट रूप से हम अपना टेबल बताएँगे
चलिए टाइप करते हैं people और where id equals todelete
todelete वेरिएबल जोकि व्यक्ति की id है जिसको हमने टेबल से चुना है
चलिए अब इसे जाँचें चलिए हम emily headen लिखते हैं
चलिए अपने डेटाबेस में देखें यदि emily headen का रिकार्ड अभी भी मौजूद है
चलिए इसे देखने के लिए रिफ्रेशrefreshकरते हैं यदि अभी भी रिकार्ड मौजूद है
जब मैं emily headen पर क्लिक करता हूँ और delete पर क्लिक करता हूँ कुछ भी नहीं होता
हमने एको नहीं किया लेकिन जब हम रिफ्रेशrefresh करने के लिए browse पर क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं कि emily का रिकार्ड डेटाबेस से डिलीट हो चुका है
अतः ट्यूटोरियल्स के इस भाग में मैंने आपको बेसिक काम करने के लिए कमांड दिखाए जैसे
यदि मैं कुछ भूल गया हूँ तो कृपया मुझे बताइए और मैं उनको इन ट्यूटोरियल्स के भागों के रूप में जोड़ दूँगा
यह सुनिश्चित कर लें कि आप मेरे द्वारा अपडेट्स के लिए सबस्क्राइब करें
मैं आशा करता हूँ कि आपने इन ट्यूटोरियल्स का आनंद लिया देखने के लिए धन्यवाद
आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद